बास के डंडों से डिजाइने बनी हुई है।

ये एक बड़ा सा मॉल के अंदर का है।

पीछे वॉल दीवारें इसकी पर्पल कलर की हैं।

पीछे वल बड़ी सी एक बिल्डिंग बनी है जिन पर खिड़कियां लगी हैं।

बगल में मेज के ऊपर एक आदमी धोती पहने हुए बैठा हुआ है।

ये एक बड़ी सी दुकान है जिसके अंदर अलमारी बनी हुई है।